भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है।

और ये बसे खड़ी हुई है बोहोत सारी ऑटो खड़े हुए हैं।

सामने भी सब्जी दिखाई दे रही है रखी हुई बहोत सारी दुकान में।

तेल की बोतल रखी सरसो की तेल की बोतल रखी दिख रही है।

आधी टूटी सी डिजाईन दिख रही है नीचे दो गोल-गोल पईये से दिखाई दे रहे है।

ये आलू दिख रहे है रखे हुए बड़े से केबिन में आलू रखे हुए दिखाई दे रहे है बहुत सारे।

और ये दूकान दिखाई दे रही है बाहर गाड़ी खड़ी हुई है और एक --

दूकान में शोकेस में सामान जमा हुआ दिखाई दे रहा है ये।

स्टेफ़नी लगी हुई है पीछे से ऑटो में --

और उसपे केयरिंग इन क्लास लिखा हुआ है।

और ये दो नर्स पीछे खड़ी हुई हैं डॉक्टर्स दिखायी दे रहे हैं।

बड़े-बड़े पाइप लगे हुए दिख रहे हैं बीच मैं--

खुला सा मैदान दिखाई दे रहा है बड़ा सा।

लेनट्रोनिक्स समान रखे हुए हैं उस दुकान में अंदर।

बसे खड़ी हैं। कुछ लोग खड़े हुए दिखा रहे हैं।

चौदह फरवरी है का सम्मलेन है ये।

दुरी पर एक मकान दिखाई दे रहा है पीले कलर का।